एक नाव है देख पा लहा हूं वो सारे लड़के हैं।

एक खीड़की है मैं देख पा रहा हूँ एक हिरण है मैं देख पा रहा हूँ--